इसे हाथ में बनाया गया है कागज से और चार्ट पेपर से और हर कलर का है ये चार्ट पेपर --

खाने का मिर्चा भी है और लेस -लेस कुरकुरे सब है।

यहाँ दुकान है और सार बहुत सारे है लेस कुरकुरे--

छः ठो है और डाल में बैठे है और उधर उधर पेड़ पौधा है और नकली का--

ये गजरा है और अ गुलाब का फूल भी है जय माला भी है अ गुलाब का फूल भी ही है अउ क कमल फूल भी है।